एक लेडीज खड़ा है और एक मतलब उसका माँ और बच्चा दोनों खड़ा है।

जिम कर जिम है और एक लड़का जिम कर रहा है और लाल --

समुन्दर है बहुत बड़ा सा समुन्दर।

घर है दो तल्ला घर है पीला और लाल कलर के रंगा हुआ है एक उजला कलर और ब्लू कलर से रंगा हुआ है।

और टेप वाला है उसमें एक में एक भी नहीं है एक में दो लड़का है।